यहाँ पे लोग घूमे आते है पिकनिक मनाने आते है। यहाँ से निचे देखने में बोहोत ही अच्छा लगता है। बोहोत ही सुंदर नजारा दिखता है।

इस मंदिर को देखने के लिए भी लोग आते हैं यहां पर मेला भी लगता है यहां पर बगल में एक बाजार भी है।

लड़कों के भी डॉक्टर बैठते हैं और लड़कियो के भी यहां पे बहुत अच्छा इलाज किया जाता है।